यहाँ पे तरह-तरह से लोग डिजाइन से केश कटवाते है।

यहाँ पे एक बुलेट गाड़ी खडी है । यह गाड़ी बहुत ही अच्छी होती है । काफी भारी होती है । इसमें दो लोग सफ़र कर सकते है । यह चलाने में काफी अच्छी लगती है ।

यहाँ पे बहुत सारे खेती करने के जमीने है खेत है जिसमे बहुत सारे फसल लगाए गए है किसान लोग खेतो में फसल लगाते है उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हे ।